जीम मे लाइट दिखाई दे रही है जीम मे ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ लोग जिम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर नीचे कारपेट भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है कारपेट का कलर ग्रीन कल--

मेरे सामने एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी लाइटिंग भी की हुई दिखाई दे रहे--

यहां पर रैक भी दिखाई दे रहा है यहां पर लड़कों में बहोत सारी बुक रखी हुई दिखाई--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

यहां पर बिल्डिंग के पिलर का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

हाफ भी दिखाई दे रहे हैं यहा पे बहोत सारे झूले भी दिखाई दे है।

झील का पानी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर--

यहां घर के सामने एक गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई--

अस्पताल में वो सारे पाइप जो दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहोत सारे बेड भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ नर्स भी दिखाई दे रही हैं।

रेस्टोरेंट में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है यहां पर शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही--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

यहां पर बहुत सारे जेंट्स भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारी लेडिज भी खड़ी हुई दिखाई दे र --

यहां पर एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है गाड़ी का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।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

ग्रील नही दिखाई दे रही है यहां पर एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है सीढ़ी पर एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और आदमी --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

में एक शॉप दिखाई दे रही है।